जैसा की आप इस तस्वीर को देख पा रहे है की यहाँ पर एक व्यक्ति मछलियाँ बेच रहा है जो की बहुत ही परिकपार मछलियाँ है|